जहां एक आदमी--

नीचे दुकानें जैसी लगी हुई शटर दिख--

नारियल के पेड़ पौधे दिख रहे हैं ।

मॉल जैसा दिख रहा है ।

सामान रखे हुए हैं ।

सड़क दिख रही है ।

जो कि दवाइयों की--

जहां एक कांच की टेबल --

काली सोहे दीख रही हैं।

दूर से दिख रहे हैं ।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

ये एक सड़क दिख रही है ।

पारक झूले दिख रहे हैं ।

और काफी उजाला भी--

ये एक सड़क दिख रही है ।

पेड़-पौधे देख रहे हैं ।

ये एक सड़क दिख रही है ।

खड़ी हुई है ।

सड़क दिख रही है ।

अलमीरा में ताला लगे हैं ।

हरियाली पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

कोई इंसान नहीं दिख रहा है और कमरे में--

स्कूटर में दो आदमी--

पेड़-पौधे दिख रहे हैं ।

दो औरत बैठी हुई दिख रही हैं।